यह एक बादाम शेक की शॉप है।

इसमें मुझे एक व्यक्ति दिख रहा है और एक ईरिक्शा दिख रही है।

इसमें मुझे सामने कुछ पानी झरने के आकार का दिख रहा है।

बस उपर ब्लू कलर का आसमान भी दिख रहा है।

चॉकलेट कलर की है कुछ व्हाइट कलर की हैं।

एक खंभा दिखाई दे रहा है और एक गेट दिखाई दे रहा है।

इस ग्राउंड में मुझे बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं।